य आस-पास काफी सारा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर भुट्टें हैं।

बहोत ही सुन्दर-सुन्दर सडियां यहाँ पर ढेर सारी साड़ियाँ हैं यहाँ पर --